ये एक क्रिकेट पिच है यहाँ पर बाउंड्रीज दिख रही है।

यहाँ कार की डैंटिंग पैंटिंग हो रही है वाशिंग हो रही है।

एक अंकल कार को धो रहे बाल्टी में पानी है उनके पास स्पंज भी है ब्लैक कलर की कार है और उनके साथ उनका एक सहायक मित्र है।

एक हाथी पानी में चल रहा है और एक लड़का उसके ऊपर है जो उसे पानी से बाहर ले जा रहा है काफी सारे लोग उसकी मदद कर रहे हैं।

यह एक गाय है जिसका रंग काला है और सफेद है।

और इसके आसपास चारा है काफी साफ सफाई भी है ये एक स्वस्थ गाय है।

यहां एक मैडम है जिनके बाल सेट किए जा रहे हैं हेयर स्टाइल बनाया जा रहा है काफी सारे क्लिप्स ऑरेंज कलर के क्लिप से इनके बाल लगाए गए हैं सेट करने के लिए--

और झूलों पर पीला और नीला रंग हुआ है आग के सामने एक सफेद रंग का घर भी दिखाई दे रहा--

यहां एक ऑफिस सेटअप है जहां पे पर्दे पड़े हुए हैं लाल पीले सफेद रंग के और चेयर्स पड़ी हुई हैं ऑरेंज कलर की और सब हमें--